एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जोकि सिर्फ पत्थरों का होता है यहाँ पर एक झील दिखाई दे रही है जिसमें पानी भरा हुआ है।

पास यह एक यूनियन नाम की एक बाईक खड़ी --

और इनमें हर तरफ से यहाँ पर ये नाला जा रहा है जो कि बहुत गंदगी का होता है। इसमें गन्दा पानी आता है और ये शहर का सभी पानी यहाँ से जाकर पार निकल जाता है।